पेंट है ग्रीन कलर का पेंट है नीचे जो है वह गेट लगा हुआ है शीशे वाला फूलों की मालाएं लगी हुई है पोस्टर लगे हुए हैं बड़े-बड़े साइडो में भी इनके लेफ्ट राइट में भी बिल्डिंगे बनी हुई है एंड सामने जो है कुछ एक अअ लोग हैं मैन है और एक लड़का है छोटा --

यह एक शॉप है शॉप का जो कलर है पूरा का पूरा रेड कलर है और उस पर कुछ लिखा हुआ है व्हाइट एंड ब्लू कलर में नीचे भी पेंट व्हाइट कलर है। सामने सीसे भी लगे हुए जिसमें एक बहुत बड़ा--

वर्क करते हुए और यहाँ सामने ऑपोजिट उसके बैग दिखाई दे रहे है फेस जो है सामने मिडिल में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर येलो कलर में कुछ स्टूल टेबल रखा है साइड में काफी सारा सामान ऊपर जो लाइटिंग भी आ रही है। क--

और ये डेकोरेट हो रहा है पूरा का पूरा स्टेज क्या ही कलर है इस में और यहाँ लाइटिंग भी लगी हुई है चारों और यहाँ झालरे भी लगी हुई है पीछे एक बिल्डिंग भी खड़ी है साईडो में यहाँ पर और यहाँ स्टेज पर एक लड़की व्हाइट कलर --

ये पीछे एक पंडाल सजाया हुआ है। और यह ऊपर एक जो पर्दा आ रहा है ब्लू कलर का है पीछे और पहाड़ भी बनाया हुआ है यह काफी मूर्तियाँ भी बनाई हुई है जैसे भोले जी देवी की है हनुमान जी की है और नीचे --

खड़े हैं जो कि सबसब ने अलग-अलग कलर का ड्रेसअप पहना हुआ है सब लोग सेल्फी में एक पंडित जी भी है यहाँ पर और यहाँ पर जमीन में --

सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। जिसने चश्मा लगाया हुआ है ग्रीन कलर में इसके हाथ में कोई औज़ार है बहुत बड़ा जिससे नावँ टिकी हुई है पीछे एक नावँ है। बहुत बड़ी और इसके अंद --

पिंक कलर की साड़ी पहन बैठी हाथ जोड़ रखे है और नीचे काफी सारा टोकरिओं में समान भी रखा है और ऊपर कुछ पत्तियों की भी लाईने लगी हुई है जोकि डेकोरटेड की गई है और यहाँ पर पीछे काफी सारी लेडीसे से खड़ी है।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। जिसने दूल्है का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है शेरवानी पहनी हुई है सर पर सेहरा भी है और हाथों में फूल भी ले रखें--